और आसपास बादल पूरे लाल दिखाई पड़ रहे हैं जोकि बोहोत सुंदर लग रहा है।

यह हमे एक स्नैक बार दिख रहा है जिसमे बहुत तरह के खाने की वैराइटीज है जैसे बर्गर चाउमीन स्नैक्स कोलड्रिंक और भी बहुत तरह के चीजें मिलती हैं इसके सामने में कस्टमर भी दिखाई दे रहे हैं।

जैसे मसाले नमक तेल चीनी चायपत्ती बिस्किट और भी खाने की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे की यहाँ पे फेवीक्विक है फॉर्चून का समान है।

यह एक दुकान है जिसमे बहुत सारे घरेलू और कॉस्मेटिक की सामाने दिख रही है जिसमे से हेयर ऑइल शैंपू साबुन और बहुत तरह बहुत ही तरह की समाने मिल रही है।

यह एक कार है जो की खराब हो गई है और कार मैकेनिक उसे ठीक कर रहा है और व्हाइट कलर की कार है।